साइकिल रखी हुई हैं और यहाँ पे बहोत सारे लोग कुछ बाइक पे बैठे रहे हैंकुछ स्कूटी पे बैठ रहे हैं।

बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

का सर पे मुकुट लगा हुआ है।

और एं तीन जेन्स खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक कार रखी है।

तीन ऊपर बैठे हैं और एक बीच में स्टूल पर खड़े --

रेड कलर की मैट बिछी है। यहाँ पे कुछ लेडिज घूम रही है।

लड़के घूम रहे हैं। कुछ जेंट्स घूम रहे हैं कुछ लडिजें हैं बहोत सारे पेड़ लगे --

और सलाद में प्याज है। हर और ककड़ी रखी हुई है। दो चम्मच हैं।

यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई है जिन्होंने स्वेटर पहनी है।

कार्टून में पैक है कुछ समान।